ये बुक शॉप है अंदर एक शॉपकीपर है शॉपकीपर बेच रहे हैं या--

एक मैट का रंग ऑरेंज है गुलाबी और पर्पल है।